इस फोटो मे हम देख सकते हैं यहां पे बहोत सारी महिलाएं --

और वहां पे बहोत सारा पूजा पाठ करने का सामान पड़ा हुआ है फूल फूल पड़ा हुआ है।

और वो लोग एक मंदिर के सामने बैठ के फोटो खींचा रहे हैं।

और वो एक खेत के पास खड़ा है।

के बाहर दो तीन कुर्सियां पड़े हैं।

बहोत सारे लोग हैं और वहां पे एक बोर्ड भी टंगा हुआ है।

और बच्चों को कई सारे बच्चों ने--

येलो ब्लैक और ब्लू बेल्ट पहना हुआ है।

अलाहाबाद बैंक लिखा हुआ है बॉर्डर पर।

इस फोटो में हम देख सकते है यहां पे एक ग्रुप डांस ग्रुप है।

भारत का झंडा अपने हाथों में लिया है।

इस फोटो में हम देख सकते हैं एक बच्चा झूला झूल रहा है।

और वो झूले का स्टैंड पीले कलर का है।

बच्चे के पीछे एक बड़ा सा मैदान दिख रहा है।

बच्चे के पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हैं।

इस फोटो में हमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

मंदिर के आस पैस बहोत हरा भरा है।

वहां पे आगे पास्टर खड़े हैं।

सामने म्यूजिक के ड्रम शीट और गाने वाले लोग खड़े हैं।

पर बहोत सारा बैलून लगा हुआ है और कमरा बहोत सजा धजा हुआ है।

इस फोटो पे हम एक व्यक्ति को सफाई करते हुए देख रहे हैं।

इस फोटो पे हम देख सकते हैं दो भैंस सड़क पे चल रहे हैं।

जैसे कि हम देख सकते हैं इस फोटो में--

पूजा पाठ कर रहे हैं उनके हाथों में फूल है।

हवन करने के लिए बहोत ज्यादा बहोत सारे मंडप मंडप बनाए गए हैं।

पूजा पाठ का बहुत सारा सामान रखा गया है।

इस फोटो में हम देख सकते हैं एक लड़का सैलून के बाहर खड़ा है।

सैलून का बोर्ड लगा हुआ है जिसका रंग लाल है।

जो एक बोट पे खड़ा है उसके आगे पीछे दो तीन बोट है।

लाल कलर का शर्ट पहना है और जींस पहना है।

इस फोटो में हम कई सारे व्यक्ति को देख रहे हैं।

और वहां पे दो छोटे छोटे बच्च लड़की बच्चियां हाथों में कैंडल लिए खड़ी हैं।

और वहां पे एक पुजारी प्रार्थना कर रहा है।

इस फोटो में हम देख सकते हैं एक परिवार--

वहां पे वाटर स्लाइडिंग करने का हमें दिख रहा है।

इस फोटो पे हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं।

और उसके आगे बहोत सारा घर दिखाई दे रहा है।

उसके आगे हमें कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

और वहीं पे दो लड़के सेल्फी ले रहे हैं।

यहां पर एक व्यक्ति नदी के बीच में बैठा हैं।

और वहां पे वो नदियों के बीच में बैठा है।

ये एक चर्च के अंदर का दृश्य है।

इस फोटो में हमें कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहें हैं।

जो सैलून के आगे खड़े हैं।

बहोत सारे लोग पूजा पाठ और भक्ति कर रहे हैं।

इस फोटो में हम देख रहे हैं एक सिविल इंजीनियरिंग --

इसके नीचे आस पास बहोत सारे ईंटे और कचरा पड़ा हुआ है।

जिसका हमें चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है।

ये एक चर्च है और यहां पे बहोत सारे पास्टर लोग है।

और उनकी मंडली है जो फोटो खींचा रहे हैं।

पीछे प्रभु ईशू क्रूज़ पे टंगे हुएं हैं।

सामने दीवार पर एक मेन्यू है।

और ये फिलहाल बन चुका है ये एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

एक बड़ा सा पोस्टर लगा है फिजिक्स वाले सर का।

जिस बोर्ड पे लिखा है जे_ई_टी मेडिकल निट पटना --

और देखकर हमें लगता है कि ये लोग एक स्कूल डांस कंपटीशन में भाग लिए हुएं हैं।

इस फोटो पे हम देख सकते हैं यहां पे कई सरे लोग बोट रायडिंग कर रहे है।

और बहोत खूबसूरत दृश्य दिख रहा है।

ये एक मोबाइल रिपेयर शॉप है।

दो बंदे खड़े हुए हैं दुकान पर--

ये एक होटल का रिसेप्शन है।

चर्च है और वहां पे दीवार पे हम देख सकते हैं वहां पे चर्च का एक नाम का बोर्ड लगा हुआ है।

जैसे कि हम देख सकते हैं आसमान बड़ा ही साफ है और आसमान में बादल लगे हुए हैं।

ये एक जिम है और यहां हम देख सकते है की हमे एक्सरसाइज करने के लिए बहोत सारे इक्विपमेंट्स दिये गये है।

जैसे वेटलिफ्टिंग के लिए डंबल्स और हेवी एक्सरसाइज के लिए सब कुछ यहां पे अवेलेबल है।

जैसे की ये जगह जिम बहोत ही खूबसूरत है।

यहां पे बहोत सारे कपड़े हैं स्पेशली ये लड़कों के लिए है।

यहां पे हम देख सकते हैं बहोत सारे शर्ट टी शर्ट पैंट और बहोत ही अच्छे अच्छे कपड़े दिख रहे हैं।

लाल कलर की ऑरेंज में ब्लू --

और आस पास बहोत ही ज्यादा घना जंगल दिखाई दे रहा है।

सामने बहोत सारे टंबलर और बिस्किट पड़े हुए हैं।

दीवार पे जो मिरर है उसका कलर लाल है।

और उसके बाहर कई सारे लोग बैठे हुए हैं।

और अंदर हमें गुफा दिख रहा है।